बोहोत सारी लेडिज और जेंट्स हैं। यहाँ पर एक जेंट्स खड़ा है जिसने ऑरेंज कलर कि शर्ट पहना हुए है और दो लोगों ने व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुई है। यहाँ पर दो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और यहाँ पर ऊपर दुकान का भी नाम लिख --

बिल्डिंग बनी हुई है जो बिल्डिंग का कलर वाइट कलर है और यहाँ पर व् बैनर लगे हुए हैं जो ब्लू कलर के हैं।

यहाँ पर जो दिवाले बनी हुई हैं किनारे किनारे उसमे बहुत सारे अ स्टीकर बने हुए हैं बलून बना हुआ है बहुत सारे कार्टून के बने हुए हैं स्टिकर।